एक यहाँ पे हरा कलर का पेड़ देखने को मिल रहा है नीचे में हमें यहाँ पर एक मोटर देखने को म --

लगे हुए फ्लावर देखने को मिल रहे हैं साइड में हमें बास देखने को मिल रहा है जिसका जोकि व्हाइट कलर का है।

डस्टबीन देखने को मिल रहा है जो कि ब्लू कलर का है।

जो ब्लैक कलर में है हमें इसके ऊपर हेल्मेट रथा हुआ देखने तो मिल रहा है यहां पे हमें एक आदमी भी देखने तो मिल रहा है एक फोर व्हीलर देखने तो मिल रहा है जो की वाइट कलर का है यहीं पे एक दीवाल भी--

कुछ आदमी हैं जो की पानी यहां पर देखने को मिल रहा है हमें यहां पर पत्थर भी देखने को मिल रहा है पत्थर का रंग--